यह एक सड़क है इस सड़क के किनारे दो बिल्डिंग हैं यहाँ पर एक बिल्डिंग में बैनर लगा हुआ है बैंक ऑफ़ बरोदा ।

यह महाविद्यालय में बहुत से बच्चे पढ़ाई करते हैं यहां पर काफी टीचर भी हैं यहां पर काफी अच्छी --

यह एक तालाब है यह तालाब काफी बड़ा है इस तालाब में बहुत से पानी हैं।